matrix operations के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्न में सक्षम होंगे:
मेट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में
मेट्रिक्स के डिटर्मिनेन्ट determinant इनवर्स और आईगन वैल्यूजeigen values को निर्धारित करने में
विशेष मैट्रिक्स को परिभाषित करने में
एलीमेंट्री रो ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने में
लीनियर इक्वेशन्स के सिस्टम को हल करने में
निम्न की पूर्व आवश्यकताएं हैं
आपके सिस्टम पर साईलैब scilab इंस्टॉल होना चाहिए
आपको स्पोकन ट्यूटोरियल: getting started with scilab और vector operations को सुना हुआ होना चाहिए
प्रदर्शन के लिए मैं विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा साईलैब scilab 522 का प्रयोग कर रहा हूँ
अपने डेस्कटॉप पर उपस्थित scilab आइकन पर डबल क्लिक करके साईलैब scilab को शुरू करें
मैं यह सुझाव देता हूँ कि यूजर को समय के नियमित अंतराल पर वीडियो को रोककर साथसाथ साईलैब में इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करना चाहिए
याद रहे कि स्पोकन ट्यूटोरियल वेक्टर ऑपरेशंस vector operations में
मेट्रिक्स e को निम्न की तरह परिभाषित किया गया था e इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 5 स्पेस19 स्पेस15 सेमीकोलन 8 स्पेस 22 स्पेस 36 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें के रूप में और एंटर दबाएँ
अब हम देखते हैं कि एक मेट्रिक्स के अलगअलग एलीमेंट्स की स्वतंत्र रूप से किस प्रकार व्याख्या की जाती है
पहली रो row और दूसरे कॉलम में एलीमेंट को एक्सेस करने के लिए टाइप करें e ब्रैकेट में 12 और एंटर दबायें
साईलैब में मेट्रिक्स की एक पूरी रो row या एक पूरे कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना आसान है
उदाहरण के लिए e की पहली रो row निम्नलिखित कमांड का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है: e1 = e ब्रैकेट में 1 कॉमा कोलन और एंटर दबाएँ
इस कमांड के परिणामस्वरूप पहली रो row के सभी एलिमेंट्स रो में उनकी उपस्थिति के क्रम में प्राप्त होते हैं
कोलन जब अकेले प्रयोग होता है तो कॉलम या रो के सभी एलिमेंट्स को संदर्भित करता है निर्भर करता है कि यह ब्रैकेट के अंदर क्रमशः पहली एंट्री के रूप में प्रकट होता है या दूसरी
मेट्रिक्स के किसी भी सबसेट subset को कोलन : का उपयोग करके भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है
उदाहरण के लिए e के दूसरे कॉलम से शुरू करके तीसरे कॉलम तक के एलिमेंट्स का सेट निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है:
e2 = e ऑफ़ कोलन कॉमा 2 कोलन 3 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
उपरोक्त में ब्रैकेट में दूसरी एंट्री यानी 2 कोलन 3 कॉलम 2 से कॉलम 3 के एलीमेंट्स को संदर्भित करता है
यदि मेट्रिक्स का आकार ज्ञात नहीं है तो मेट्रिक्स की अंतिम रो row या कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए $ डॉलर चिन्ह का इस्तेमाल किया जा सकता है
उदाहरण के लिए मेट्रिक्स e के अंतिम कॉलम की सभी रोज़ rows को निकालने के लिए हम टाइप करेंगे
elast col = e ब्रैकेट में कोलन कॉमा डॉलर साइन ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
अब सीखते हैं कि det कमांड का उपयोग करके एक स्क्वायर मेट्रिक्स के डिटर्मिनेन्ट determinant की गणना कैसे की जाती है
याद रखें कि वेक्टर ऑपेरशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में हमने a को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया था
a = स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस माइनस 1 सेमी कोलन 2 स्पेस 6 स्पेस 4 सेमीकोलन 1 स्पेस 3 स्पेस 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
कमांड det of a का प्रयोग करके a के डिटर्मिनेन्ट determinant की गणना करते हैं और एंटर दबाएँ
एक मेट्रिक्स के इनवर्स तथा आईगन वैल्यूज की गणना करने के लिए क्रमशः inv और spec कमांड का प्रयोग किया जा सकता है
उदाहरण के लिए: inv of a a का इनवर्स देता है तथा spec of a मैट्रिक्स a की आईगन वैल्यूज देता है
help spec देखें यह देखने के लिए कि इस कमांड का उपयोग करके आईगन वेक्टर्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं
एक स्क्वायर मेट्रिक्स a के स्क्वायर या क्यूब की गणना क्रमशः a स्क्वायर या a क्यूब टाइप करके की जा सकती है
मेट्रिक्स पर घात लगाने के लिए साधारण अरिथ्मैटिक ऑपरेशंस की तरह ही एक कैरेट चिन्ह का उपयोग किया जाता है हमारे कीबोर्ड में यह shift+6 दबाने से प्राप्त होता है
कृपया अब ट्यूटोरियल रोक दें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या एक को हल करें
कुछ विशेष मेट्रिक्स साईलैब में भी बनाए जा सकते हैं:
उदाहरण के लिए 3 रो और 4 कॉलम युक्त ज़ीरोज़ zeros का एक मैट्रिक्स zeros कमांड का प्रयोग करके बनाया जा सकता है
ज़ीरोज़ ब्रैकेट्स में 3 कॉमा 4 और एंटर दबाएँ
एक मेट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 हों ones कमांड का प्रयोग करके बनाई जा सकती है जो निम्नलिखित है
ones ब्रैकेट में 2 कॉमा 4 सारे एलिमेंट्स1 की एक मेट्रिक्स देता है
eye कमांड का उपयोग करके एक आइडेन्टिटी मेट्रिक्स बनाना आसान है:
eye of 4 कॉमा 4 एक 4 by 4 आइडेन्टिटी मेट्रिक्स देता है
एक यूजर को स्यूडो रैंडम नंबर्स से युक्त एक मेट्रिक्स की आवश्यकता हो सकती है इसे rand कमांड का प्रयोग करके निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है:
p=rand ब्रैकेट में 2 3 और एंटर दबाएँ
लीनियर सिस्टम में यूजर द्वारा मेट्रिक्स पर की जाने वाले ऑपरेशन्स के महत्वपूर्ण सेटों में से एक एलीमेंट्री elementary रो और कॉलम ऑपरेशन्स हैं
इन ऑपरेशन्स में एक अशून्य संख्या के नीचे की एंट्रीज़ को शून्य बनाने के लिए एक मेट्रिक्स पर रो ऑपरेशन्स करना शामिल है यह साईलैब में आसानी से किया जा सकता है
याद रखें कि वेक्टर ऑपरेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में हमने मेट्रिक्स p को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था
p = स्क्वेर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस 3 सेमीकोलन 4 स्पेस 11 स्पेस 6 स्क्वेर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
अब एक उदाहरण पर विचार करते हैं जहाँ एलीमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करके दूसरी रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को शून्य में बदला जाता है
पहली रो में 4 से गुणा करके और इसे दूसरी रो से सब्ट्रैक्ट करके इस ऑपरेशन को निष्पादित किया जा सकता है जैसा निम्नलिखित कमांड में किया गया है:
p ब्रैकेट में 2 कॉमा कोलन इज़ इक्वल टू p ब्रैकेट में 2 कॉमा कोलन माइनस 4 इसे p ब्रैकेट में 1 कॉमा कोलन से मल्टिप्लाई करें और एंटर दबाएँ
इस प्रक्रिया को बड़े सिस्टम्स के लिए और एलीमेंट्री कॉलम ऑपरेशन्स के अन्य रूपों के लिए बढ़ाया जा सकता है
रोज़ rows और कॉलम्स को मेट्रिक्स में आसानी से संलग्न किया जा सकता है
उदाहरण के लिए एलिमेंट्स 5 5 2 से युक्त एक रो को p में संलग्न करने के लिए निम्नलिखित कमांड का प्रयोग किया जाता है:
t = स्क्वेर ब्रैकेट खोलें p सेमीकोलन दूसरा स्क्वेर ब्रैकेट खोलें एलिमेंट्स 5 5 2 लिखें दोनों स्क्वेर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
p के बाद सेमीकॉलन यह बताता है कि इसके बाद कुछ भी अगली रो में जाना चाहिए
यह उसी तरह अपेक्षित है जैसे एक मेट्रिक्स को परिभाषित किया जाता है
एक अभ्यास के रूप में कृपया यहाँ रुकें और जाँच करें कि क्या अभी निष्पादित किए गए कमांड में नई रो के दोनों तरफ ब्रैकेट वास्तव में आवश्यक है
समीकरणों को हल करते समय मेट्रिक्स नोटेशन्स का उपयोग किया जाता है
अब लीनियर इक्वेशन्स के निम्नलिखित सेट को हल करते हैं:
x1 + 2 x2 − x3 = 1
−2 x1 − 6 x2 + 4 x3 = −2
और − x1 − 3 x2 + 3 x3 = 1
समीकरणों के उपर्युक्त सेट को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है
फिर हल इनवर्स ऑफ़ a टाइम्स b के रूप में दिया जाता है
अब समीकरणों के सेट को हल करते हैं
a को निम्न के रूप में परिभाषित किया जाता है a = स्क्वेर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस 1 सेमीकोलन 2 स्पेस 6 स्पेस 4 सेमीकोलन 1 स्पेस 3 स्पेस 3 स्क्वेर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
b को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है b इज़ इक्वल टू स्क्वेर ब्रैकेट 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 1 स्क्वेर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
x का हल प्राप्त किया जा सकता है x = inv इनवर्स ऑफ़ a को b से गुणा करके
यह ध्यान दें कि कमांड inv में i स्माल लेटर में हो
वैकल्पिक रूप से साईलैब में एक बैकस्लैश ऑपरेशन का प्रयोग करके भी समान परिणाम प्राप्त किया जा सकता है
अब साईलैब में इसे करते हैं x इज़ इक्वल टू a बैकस्लैश b और एंटर दबाएँ
यह समान परिणाम देता है इसके व्यक्तिगत लाभों एवं हानियों के बारे में अधिक जानकारी के लिये साईलैब में हेल्प बैकस्लैश help backslash और हेल्प इन्व help inv टाइप करें
इस हल की वैधता का सत्यापन बैक सब्स्टिटूशन back substitution यानी axb की गणना से किया जा सकता है:
a को x माइनस b से मल्टिप्लाई करें
उपरोक्त अभ्यास पूर्व में प्राप्त किए गए परिणाम को सत्यापित करता है
यह संभव है कि कुछ सिस्टम्स में उपरोक्त सत्यापन अभ्यास मध्यवर्ती फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के कारण सटीक शून्य युक्त एक मैट्रिक्स प्रदान नहीं कर सकता है
हालांकि वास्तव में एक बहुत छोटी संख्या प्राप्त होगी आम तौर पर 10 की घात 16 के क्रम की
कृपया अब ट्यूटोरियल को रोकें और वीडियो के साथ दी गयी प्रश्नावली संख्या 2 को हल करने का प्रयास करें
यह हमें मेट्रिक्स ऑपरेशन पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है
साईलैब में कई अन्य फंक्शन हैं जिन्हें अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल्स में कवर किया जाएगा
साईलैब लिंक्स देखते रहें
इस tutorial में हमने सीखा
कोलन ऑपरेटर का प्रयोग करके मेट्रिक्स के एलीमेंट को एक्सेस करना
backslash या inv कमांड का प्रयोग करके मेट्रिक्स के इनवर्स की गणना करना
det कमांड का प्रयोग करके मेट्रिक्स के डिटर्मिनेन्ट की गणना करना
spec कमांड का प्रयोग करके एक मेट्रिक्स के आईगन वैल्यूज की गणना करना
सारे एलिमेंट्स 1 वाले मैट्रिक्स नल मेट्रिक्स आइडेंटिटी मेट्रिक्स तथा क्रमशः फंक्शन्स वन्स ones ज़ीरोज़ zeros आई eye रैन्ड randका प्रयोग करके रैंडम एलिमेंट्स वाले एक मेट्रिक्स को परिभाषित करना
लीनियर इक्वेशन्स के सिस्टम को हल करना
यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन fossee द्वारा बनाया गया है
fossee प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी
मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिये धन्यवाद अलविदा